एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई है।

यह एक मेले की फोटो है।

जिसके नीचे काफी सारी दुकानों के शटर भी दिख रहे--

मुर्गीयां ही मुर्गीयां दिख रही है।

पॉली क्लिनिक जबलपुर संभाग जबलपुर --

यह एक तालाब की फोटो है।

यहां पर कोका कोला का डिस्पेंसर भी दिख रहा।

एक टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए है।

यहाँ लाल गुलाब जामुन सफेद रसगुल्ले--

जिसमें बहोत सारी अलग अलग वैरायटी की--

यहां पर बहुत सारी पटरियां--

हाइपरटेंशन वायर्स भी दिखाई दे रहे हैं।